यह फोटो में आप देख सकते है की एक व्यक्ति बैठा हुआ है एक्चुअली यह फूलों की दुकान हैं तथा सामने आप देख सकते है की काफी सारी --

इस फोटो में आप देख सकते है कि बिचो-बीच नदी है नदी के ऊपर ये ब्रिज है ब्रिज का बॉर्डर पत्थरों से बना है जो कि सफ़ेद और काले रंग का है ।

यह फोटो मे तीन व्यक्ति खड़े है एक साथ फोटो खींचा रहे है तथा वह इनके नीचे कालीन बिछी हुई है रंग-बिरंगी।

लेग नजर आ रही है पीछे दीवार पे शीशे भी दिखाई दे रहे हैं।

तब बिल्डिंग के सामने एक इमेज है जिसपे पोस्टर लगा है पीले कलर का।

इस फोटो मे सोफा दिखाई दे रहा है जो कि लाल और चांदी का कलर का है पीछे उसकी दीवार भी नजर आ रही है जो कि गोल्डन कलर की है ।

बगल में गेट भी दिखाई दे रहा हैउसके ऊपर भी खिड़की है जो कि शीशे की है ।

इस फोटो मे आप देख सकते है जैसे ये एक चर्च नजर आ रहा है चर्च में मेज के पीछे पादरी भी दिखाई दे रहे है ।

उन पे कई सारे व्यक्ति महिलायें मिल के लेटे हुए हैं जो कि सफ़ेद कपड़ा पहने हुए हैं ।

गुब्बारे से सजा रखा है भवन के तीन-चार कमरे दिखाई दे रहे है उनके बाहर भी मालाएं और गुब्बारे लटका रखे हैं ।

दो पिलर है ऊपर की छत दिखाई दे रही है तथा आगे की ओर देख सकते है की एक बड़ा टेम्पू भी दिखाई दे रहा है।

इसमें रोड़ी मिट्टी कुर्सी तथा कई व्यक्ति भी दिखाई दे रहे है तथा कुछ गमले भी दिखाई दे रहे हैं ।

उस के ऊपर चारों तरफ से बोर्ड और डं लोहे की डलियाँ लगा रखी जिनमें काफी खाने का सामान रखा डब्बे रखा के --

सामने आप देख सकते हैं की कुछ कपड़े रंग-बिरंगे टंगे हुए हैं उनके पास कई झोपड़ियाँ दिखाई दे रही हैं।